और बहुत ही अच्छे तरह से रंग किया हुआ है।

जो अपना काम कर रहे हैऔर यहाँ की सारी वस्तुएँ |

यह एक फार्म है यहाँ बहुत छोटे छोटे घास नज़र आ रहे है।